जोकि गोल गोल घूम रहा है।

इस इमेज में हमें एक सुंदर सा रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

इस शॉप के बाहर टू व्हीलर गाड़ियों की पार्किंग नजर आ रही है।

और यह एक घर के बाहर खड़ी हुई--

दुकान नजर आ रहीं हैं। यह दुकान गाड़ियों के गॅरेज की हैं।

इस दुकान के ऊपर मां नर्मदा सर्विस सेंटर का बोर्ड लगा हुआ हैं।

इस बिल्डिंग में अभी कोई भी व्यक्ति नजर आ रहा है।

इन सोफों पर और कोई भी बैठा नहीं है।

अ इस प्लांट गैलरी के अंदर एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में हमें एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है और यह एक रात के समय का दृश्य नजर आ रहा है यहां पर--

चढ़ता हुआ नजर आ रहा है जो व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ रहा है उसनें व्हाइट कलर की टी_शर्ट --

इस इमेज़ में हमें एक शॉप दिखाई दे रही है जो कि--

इस इमेज में हमें एक बुक की शॉप नजर आ रही है।

अपना सेल्फी लेते हुए नज़र आ रहा है।

और यहां पर बहोत ही बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

एवं एक गाड़ी भी साइड में पार्क की हुई नजर आ रही है जहां पर एक पेड़ भी है।

इस इमेज में हमें एक बिल्डिंग नजर आ रही हैं जिसका कलर येलो है और मैरून कलर हैं।

इस बिल्डिंग के ऊपर एक ब्लू कलर का बोर्ड भी लगा हुआ है।

और इस बिल्डिंग के बाहर की तरफ एक गार्डन नजर आ रहा है।

इस इमेज में हमें चांदी की वस्तुएं रखीं हुई नजर आ रहीं हैं।

और इस टेबल पर रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ है और दो चेयर्स यहाँ पर लगी हुई है जो की खाली है।

एक कॉस्मेटिक शॉप नजर आ रही है।

जिसमें कि गोल्ड प्लस और कुछ शहनाज हुसैन की क्रीम्स रखी हुई है।

यहां एक लग्जरियस हॉल दिखाई दे रहा है।

बहोत सारा किनारे पर पानी पड़ा हुआ है और उसके पास में--

और यहां पर पथरीला इलाका है और उसके बाद में ग्रीन कलर की झाड़ियां लगी हुई हैं।

इस फोटो में हमे कंस्ट्रक्शन होता हुआ नजर आ रहा हैं।